इस तस्वीर में मुझे कुछ हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है कुछ बच्चों का खेलने वाला भी नजर आ रहा है कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

कुछ बड़े बड़े नाम भी दिखाई दे रहे हैं।

पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बड़ा सा लोह का पॉल भी नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं पास में मुझे एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही है।

स्वास्थ केंद्र नाम लिखा हुआ है इसके अंदर एक मुझे महिला नजर आ रही है।

बिल्डिंग भी नजर आ रही है एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है इसके पास में एक बड़ा सा --

कुछ मशीने नजर आ रहे हैं कुछ क्यार्ड बनाने वाली मशीने भी दिखाई दे रही हैं।

मकान भी नजर आ रहा है आस पास में कुछ मार्बल भिड़े हुए कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं कुछ महिले भी खड़ी हुई नजर आ रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सियां नजर आ रही है कुछ तन्याें पे कपड़े सूख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें एक गाड़ी भी नजर आ रही है पास में गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

एक फूल भी नजर आ रहा है एक पोस्टर पर बनी कलर के नाम भी नजर आ रहे हैं।

लड़कें दिखाई दे रही है जिनके हाथ में कुछ--